पिक्चर मे कुछ हिरन दिख रहे हैऔर वह जाली के बहार है।

और यहाॅं पे कुछ घास दिख रही है| बाहर ग्रीन कलर के कुछ व्रक्ष हैं।

और जाली लोहे की है और एक बिल्डिंग दिख रही है खिड़की उसकी।

और यह पे दो टेबले रखी हुई है स्लेटी कलर की और पीछे कुछ साड़िया तंगी हुई है।

पिक्चर में एक घर दिख रहा है जो व्हाइट कलर का है और रेड कलर की बॉर्डर दिख रही--

तथा कलर्स मे दिख रहा है और बहुत सारी मिट्टी भी दिख रही है और बहुत सारे ग्रीन कलर के पेड़ दिख रहे है और मिट्टी दिख रही है और आदमी भी दिख रहे चार-पाँच।